काफी सारे अलग अलग कंपनी के--

और भी बहोत सारे यहां पर फोन नजर आ रहे हैं हमें--

बाहर चिप्स वगैरा पड़े हुए हैं अंदर काफी सारी चेयर रखी हुई हैं।

रोशनी है दुकान में लाइट लगी हुई है।

और कुछ लोग बस मे चढ़ते हुए नजर आ रहे है हमे।

फ्रिज रखा है जिसके अंदर फ्रूटी कोका कोला रियल जूस सब कुछ रखा है।

यहां पे बनियान नजर आ रही हैं। लेविस की और माचो की।

एक झूला है जिस पे दो बच्चे झूल रहे हैं दिन का समय है आसपास पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।